यहाँ पर सिर्फ पुस्तक ही पुस्तक दिखाई दे रहा है।

उस के उप इसके ठीक किनारे पास एक पक्का का घर बना हुआ है जो की बन चूका है।

रीकलेक्शन फ्लोऑन अलेमेन्स --

नाइट्री एरीज और उसके ऊपर एक टीवी दिखाई दे रहा है जो की सी सी

और यहाँ पस एक व्यक्ति--